हमारे सामने एक फूल का दुकान है जिसमें बहुत सारा फूल है जिसमें रेड और येलो और ग्रीन और बहुत तरा का फूल है और --

गमला भी यहाँ पर रखा हुआ है और बहुत ज्यादा ही सुंदरता से सजाया हुआ है| सब फूल सबको रेड और येलो मिक्स में है।

हमारे सामने एक बहुत ही पौष्टिक भो-भोजन है जिसमे चावल है पनीर की सब्जी है दाल है एक कटोरी में और एक कटोरी में चिकन है ।

और यहाँ पे दो औरत लोग है चली जा रही है। दोनों औरत साड़ी पहनी हुई है और सर पर कुछ गठरी रखी है।

यह कहीं किसी समुंदर के किनारे का है जहा पे बहुत बड़ी-बड़ी शिप लगी हुई है दो ठो शिप का कलर एक शिप का कलर येलो हैं। येल्लो और ग्रीन मिक्स है वहा पर एक आदमी भी खड़ा है।

इस पे ड़ेरी मिल्क का किटकेट का चॉको ब्लास्ट का उसके बाद फिर ओरिओ बिस्किट का बहुत ही सुन्दर डेकरैशन --